और बिजली का खंबा भी दिखाई दे रहा हैं।

यहां पर बहोत सारा पानी दिखाई दे रहा--

पेड़ दिखाई दे रहा है और बहोत सारा सामान भी दिखाई दे रहा है।

और दीवार भी दिखाई दे रही है।

यहां पर आसमान दिखाई दे रहा है और धूआ दिखाई दे रहा है।

उस आदमी ने काले रंग की पेंट पहन रखी है।

और काले रंग के जूते पहने हुए हैं।

और एक रास्ता दिखाई दे रहा है।